है और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे नीला पानी है ओड़ काफी --

या फिर मदरसे की तस्वीर है जहाँ पर कि इतना खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ से देख रहे हैं ये बाहर का है और इसमें अंदर भी बना हुआ है और यहाँ पर इसके पास घर हैं काफी बड़े घर हैं।

मैं देख रही हूं ये जो तस्वीर है ये एक मेले की तस्वीर है जहाँ पर की --

ज्यादा लोग मेले में इकट्ठा हैं और यहां पर ये आग उम्म जल रही है जैसे कि यहाँ पर कोई खेल दिखा रहे हैं और ये रात का अ वक्त है और जैसे कि यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हैं और यहां पे डेकोरेशन भी --

कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनको मिस्त्री बोलते हैं और यहाँ पर ये फंटी रखी हुई है और जैसे कि यहाँ पर ये जगह बन रही है इसका लिंटेल डल रहा है जैसे कि छत बोलते हैं।